यहाँ पर फ़ोटो में बहुत सारी लड़कियां नजर आ रही है।

में क्रिकेट खेल रहे हैं खिलाड़ी लोग और कुछ लड़के लोग बैठे हुए हैं।

ये इसमे यूनियन बैंक की ए.टी.एम. है और दो आदमी बाहर हैं एक बड़े आदमी एक छोटे बच्चे हैं और ए.टी.एम. सजा हुआ है।

और तिरंगा झंडा फहराने की ये सजी हुई हैं और --

और ये कोई दुकान जैसा लग रहा है।

चित्र में एक आदमी बैठे है कुर्सी पे उजला पैंट लाल शर्ट और काला बंडी पहन कर और ये किताब का दुकान है पीछे बैलून भी लगा हुआ है।

ए कप स्टैंड में सारा कप बहोत सारा।